इस तस्वीर में देखा जाता है की आगे की तरफ एक गेट लगा है गेट पे एक छोटा बोर्ड लगा है नीले कलर का।

जिसमें कई प्रकार के उस रूम में कपड़े लगाए गए हैं।

इस तस्वीर में मुझे दो दुकानें दिखाई दे रही है जो की अंदर से कल --

इस तस्वीर के नजरिया है रात का है और मुझे एक इसमें होटल दिखाई दे रही है जिसपे --

मुझे एक रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा है और रेल खड़ी भी है बार बार पेड़ पौधे यह बहुत सुंदर नजरिया है।